पीछे में शीशे में कुछ बोतले हैं घर में कई रंग-बिरंगे लगे लाइट हैं कई रंग-बिरंगे पे_टी_एम लगे है एक दो स्विच है।

बगल में चार मंजिला बिल्डिंग है उसके उप्पर एक त्रिपाल है और एक मोटर भी छत पे लगा हुआ है।

बगल में तीन मंजिला पीला कलर का घर है तीन चार मरकरी लगे हुए है उसका पीछे पोल है बगल में हरे भरे वृक्ष है छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं।

बी_ओ_आई बैंक है इसके बाहर एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है बैंक के बाहर एक जींस फेका हुआ है अंदर में एक व्यक्ति काम कर रहा है अंदर में एक बोरा और दोल है गेट व्हाइट कलर का है उसके बगल में एक तार निकला हुआ है।